यहाँ पर एक पेट्रोल पर्प बना हुआ है। जो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ पेड़ लगे हुए है। वह दिखाई दे रहा है। कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है। ऑटो खड़ा हुआ है वह दिखाई दे रहा है।

यहा पर ऑटो दिखाई दे रहा है। गाड़ी दिखाई दे रही है। कार कार दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर कुछ घूमटे बनी हुए है। जो दिखाई दे रही है।

यहा पर एक हॉल दिखाई दे रहा है। जिसमे कुर्सी टेबल लगी हुए है। जो दिखाई दे रही है। यहा पर एक रॅक मे कुछ कपड़े रखे हुए है। जो दिखाई दे रहे है।

पर एक रेल दिखाई दे रही है। रेल के उपर एक पूल बना हुआ है जो दिख रहा है। यहा पर कुछ रेल के पोते दिखाई दे रहे है।

यहा पर ग्राउंड मे कुछ सुखी घाँस लगी है जो दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान मे सिमेंट की कुर्सिया बनी हुई है वह दिखाई दे रही है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर कुछ सूखे पेड़ लगे हुए हैं कुछ हरे-भरे पेड़ लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं।

यहा पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है सीढीया बनी हुई है जो दिखाई दे रही है जंगला लगा हुआ है जो दिखाई दे रहा है।